यह एक शॉप है जिसमें हेल्प लिए जाती मै आई हेल्प यू .

यह एक मैदान है जिसमें जे.सी.बी. है जो की मिट्टी को खोद रही है एक आदमी उसे ढूंढ रहा है।

यह एक मैदान है जहाँ पे एरोप्लेन जैसा एक स्थल बना हुआ है। यहाँ पे दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक मस्जिद है जिसमें तीन प्रकार के गेट लगे हुए हैं जिसमें नीले कलर से पेंट किया गया हैं।

यहां पे एक गिटार रखे हुए है साथ ही हारमोनियम और ढोलक भी रखे हुई हैं और कुछ बर्तन रख रखे हुए है जिनके ऊपर हैलमेट लगा हुआ है।

साथ ही और कई प्रकार के गाने बजाने के सामग्री रखी हुई है।

हरे पेड़ है जो भी घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते है यहां पे बहुत सारे घने पेड़-पौधे लगे हुए है।